यहाँ पे और पेड़ भी है जमीन पूरा काफी है दूर तक ।

पत्तियाँ हरा-हरा दिख रहा है एक में से फल --

और उसके पीछे एक औरत और भी है वो खड़ी हुई है और मछली अच्छा से सजा-सजा के रखा हुआ है दिख रहा है पूरा नीचे में --

इ मूर्ति है पत्थल के बना हुआ है पूरा।

लेडीस भी यहाँ पे खड़ी हुई है लड़की भी है औरत सब है लड़का सब है पीछे में घर है।

और भाई साहब वहाँ पर खरीद रहा है सब ये लोग बैठ कर बेच रहे है और ये तरजुइ है जो की बेचते है पैसा भी रखे हुए है।

हमारा पति देख रहा है पेड़ में और इधर पूरा फील्ड बड़ा है ।

यहाँ पे मंदिर है पुराना बहुत पुराना मंदिर जिसका पुराना जैसे दिख रहा है पूरा बड़ा है।

यहां पे एक ही आदमी जा रहा है हाथ में तिरंगा पहना हुआ है।

में कागज ली हुई है कुछ लिखा हुआ है इसमें।

बहुत सजाया गया है चेयर भी है और पीछे पूरा दिख रहे है पूरा लोग --

और नदी घेरा हुआ है पूरा लगा हुआ है --

एक कॉलेज है एस.एन. सिंह कॉलेज जहानाबाद लिखा हुआ है इस पे और वहाँ पे पूरा स्टूडेंट --

एक पहाड़ के गुफा है जिस में घुस रहा है --

लगा हुआ पूरा लाइट है घर है पंखा भी है ऊपर में है।